नजर आ रहा है नीचे दीवार दिखाई दे रही है दीवार पे एक झंडा नजर आ रहा है उसपे केसरिया सफ़ेद हरा --

पास पेड़ दिखाई दे रहे है पेड़ो का रंग हरा नजर आ रहा है नीचे जमीन दिखाई दे रही है जमीन का रंग भूरा दिखाई दे रहा है जिसमें मिट्टी नज़र आ रहीं है।

यहाँ एक सड़क नजर आ रही है पास दीवार नजर आ रही है दीवार का रंग पीला और लाल दिखाई दे रहा है दीवार के पीछे --

यहाँ आलू रखे हुए है आलू का रंग सफ़ेद नज़र आ रहा है आलू पे मिट्टी दिखाई दे रही है मिट्टी का रंग--

एक ऑटो दिखाई दे रहा है जिसका रंग काला और हरा नजर आ रहा है सड़क का रंग भूरा दिखाई दे रहा है एक गाड़ी नजर आ रही है ।

यहाँ एक मैदान दिखाई दे रहा है जिसमें बिल्डिंग नज़र आ रही है बिल्डिंग का रंग पीला दिखाई दे रहा है और सफ़ेद नज़र आ रहा है।

टोकरी का रंग भूरा नजर नजर आ रहा है बांस भी है।

सफ़ेद नजर आ रहा है पेड़ दिखाई दे रहे है पेड़ो का रंग हरा नज़र आ रहा है।